इस चित्र में कुछ मशीने रखी है जिनमें से इनका रंग सफेद है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी चर्च का है यहां पर कुछ औरते बैठी है और एक इंसान खड़ा है।